कोई दुकान खुला है और बाकी सब नाव के इधर बैठे हैं।

और ये लोग सब फोटो का घसीट रहे शायद कुछ है डी_जे बीजे लगा रहे लगता--

एक अंकल ड्राम पड़क के खड़ा है।